यह पार्किंग एरिया मे एक कार ठहरी हुई हैं।

जहाँ पर लोग दूर तरह से खरीदारी करने आते है ।

साइडो पे ऊचें-ऊचें पहाड़ नज़र आ रहे हैं।

ये दिल्ली का मजबूर सुपर स्टोर हैं।

ये दिल्ली का मशहुर मंदिर हैं।

देखने मे यजदिक मालूम हो रहा हैं।

आसमान पर रेनबो के मुनाज़िर बहुत खूबसूरत लग रहे है ।

खाने के अशिया मे स्लाइस --

ये एक स्कूल या कालेज हैं ।